यहाँ पे क्लास रूम है जहां पे दो-एक टीचर और एक स्टूडेंट बैठ के सेल टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं |